और यह हेलीकॉप्टर फील्ड में ही लैंड करता है। यह हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते है।

बहुत आसानी तरीके से बस पे बैठते हैं लोग।

हिन्दू धर्म के लोग है यहाँ पे बहुत सारे हिन्दू धर्म के लोग जाते है पूजा करने के लिये ।